इस इमेज में सामने यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है यहां पर --

इस इमेज में सामने यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है यहां पर फूलों का डेकोरेशन हो रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक झील दिखाई दे रही है जहां सामने दो बड़े पत्थर भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक जिम दिखाई दे रही है और यहां पर ऊपर लाइट्स भी जल रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लोग नहाते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर घर दिखाई दे रहा है यहां पर एक गेट भी नजर आ रहा है।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

और यहां अंदर एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

बाइक भी खड़ी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक चर्च दिखाई दे रहा है जहां गेट के पास कुछ लड़के खड़े हुए हैं।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

इस इमेज में सामने यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है यहां पर दीवार पर पोस्टर लगे हुए हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर दुकान दिखाई दे रही है जहां पर अग्रवाल ब्रदर्स लिखा नजर आ रहा है।